दो पूल नज़र आ रहे है एक घर उसी में दो फूल है जो पीले कलर के दिख रहे है साइड में पेड़-पौधे--

एक घर हैं जो ऊपर में रॉड लगा हुआ हैं नीचे जो हैं इसका दिवाल हरे कलर के हैं और साइड में जो हैं ब्लू कलर --

एक बहुत ही बड़ा घर दिख रहा है उसके ऊपर एक पिलर है पिलर रॉड बना हुआ यहाँ पे वो जो है मिट्टी कलर का जो बना हुआ है उसके पीछे एक पेड़ है नारियल के आगे जो है।